या एक कपड़े की दुकान है इक माइन गरम कपड़ा की डी है।

यह एक नदी की फोटो है एकै महिने एक टापू दरसायोडो है।

अलग अलग तरीके जचायोडो है।

यह कोई देखने में पैसा कमाने को घर लाग रहियो है और दिवार के ऊपर बढ़िया डिजाइन बनाईओडी है और गेट के ऊपर --